दो पेड़ पौधे भी लगा हुआ है।

और इसके नीचे में दुकानें सब भी है।

मुझे इस तस्वीर मे एक जीम दिख रहा है।

बहुत सारे कार्टून भी रखे हुए हैं।

और दुकान के अंदर घड़ी और स्पीकर फोन के कवर्स हेडफोन्स ।

अ नीचे में बहुत सारे मनुष्य दिख रहा है।

और एक आंख का तस्वीर भी दिख रहा है।

जिसमें ऊपर में दामिंग हार्डवेयर लिखा हुआ है।

भी दिख रहा है और नीचे में ढेर सारे सामान रखा हुआ है बाहर में पाइप्स भी रखे हुए है।

एक माइक भी और ऊपर में एक फ्रेम भी लगा हुआ है।

और एक पानी का बोतल भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक गाड़ी दिख रहा है जिसमें परफेक्ट लिखा हुआ है।

और जमीन में ढेर सारे प्लास्टिक भी बिखरे हुवे हैं।

और पीछे में पहाड़ और नीला आसमान भी दिख रहा है।

और एक हमारा तिरंगा भी लगा हुआ है।

अंदर में एक मनुष्य भी दिख रहा है और टेबल भी--

और ढेर सारे मनुष्य बैठा हुआ है।

ऊपर मे ढेर सारी लाइट्स लगे हुए हैं और ए_सी भी--

इसमें ढेर सारे मनुष्य खड़ा हुआ है और एक बैग भी दिख रहा है।

पल दिख रहा है जिसमें ढेर सारे खेलने के लिए सामान रखे हुए हैं और पानी भी दिख रहा है।

और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

जिसके सामने एक स्कूटी को भी पार्किंग में रखा हुआ है।